चित्र मे एक समंदर के पास मे एक मछली वाला मछली बेच रहा है।

उसके आस-पास मे कुछ लोग उसके पास मे मछली खरीदते नजर आ रहे हैं।

और कुछ पेड़-पौधे वहाँ पे मौजूद है।

वहाँ पे हिप्पोपोटामस के आस पास पानी है।

दीवार के पीछे एक ए_सी मौजूद है जो ऑन है और उसमे कुल सात लॉग प्रैक्टिस कर रहे हैं ।

चित्र में आपको एक इमारत के बारे में बताया गया है उस इमारत में कुल चार फ्लोर है और वो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है।

इस तस्वीर में मुझे एक शादी हुई-हुई हुई लग रही है।